लगी हुई भी दिखाई दे रही है शीशे लगे हुए हैं बोर्ड लगे हुए हैं।

शीशे लगे हुए हैं बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ हिंदी में लिखकर लगाया हुआ है।

स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल खड़े दिखाई दे रहे हैं।

अ और बैंक भी दिखाई दे रही है बैंक लिखा हुआ है और ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है।

जहां पे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं दुकानों के सामने साइकल मोटरसाइकिल खड़े दिखाई दे रहे हैं एक रेहड़ी भी दिखाई दे रही है।

जिनके हाथ पे एक बाला है वो अपने अ गेम की गतिविधि कर रही है यह एक बड़े--

पीछे काफी घर हैं बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं कुछ फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अ डांस अ नाच रहे हैं और ऊपर पंखे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में गुरुद्वारा साहिब की तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत सारे पंखे भी लगे हुए हैं बाहर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ मैट भी बिशे हुए दिखाई दे रहे हैं छोटा-छोटा घास भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ए_सी लगा हुआ है शीशे लगे हुए हैं बहुत सारी दुकानें हैं पोस्टर भी लगा हुआ है नेस कैफे का।

और पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और आसपास बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं गाड़ियां दिखाई दे रही हैं लाइटें लगी हुई हैं बड़े-बड़े खंबों पे--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

पीछे ही एक आदमी पीले रंग की शर्ट टी-शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

पीछे यह दरवाजा दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही है।

और आसपास बड़े-बड़े पौड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं कुछ कूड़ा करकट भी दिख रहा है आसमान का नजारा बड़ी सुंदर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में एक अ पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है पुराना पुल दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक रिक्शा एक औरत बैठी हुई है।

अ पीछे की तरफ भी एक और सोफा दिखाई दे रहा है ऐ_सी लगा हुआ है लाइट लगी हुई दिखाई दे रही शीशे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।